साइड में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

बगल वाले दुकान में दो लड़के हैं जो बैठे हुए हैं।

दो डब्बे हैं जिसमें एक में नमक दिखाई दे रहा हैं और दूसरे में चिली फ्लैक्स दिखाई दे रहा हैं।

किसी घर के छठ के ऊपर पार्टी होने वाले हैं।

एक छोटे से इस्टोल लगे हुए हैं।

पीछे बना हुआ बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

उसमें एक महिला दिखाई दे रही है बहुत सारे जेंस है।

एक टाटा स्काई का छत्री लगा हुआ है।

और बहोत सारे लोग पीछे साइड बैठे हुए हैं।

बैंक के बाहर एक वाइट कलर का कार लगा हुआ है।

जिसमें से बेंच पे एक आदमी बैठा हुआ है और दो खड़ा हैं।

और अंदर शॉप में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा हैं।

ये एक होटल है होटल में चाय बन रहे हैं और साइड में अंडे भी हैं अंडे ऊपर सजा कर रखे हुए हैं और--

ये एक रोड है रोड के पास एक फूल दिखाई दे रहा है।

एक पीछे से कार आ रहा है।